ये बहोत सारे वस्तुएं नीचे जमीन पर पड़ी हुई है।

मशीन के आगे एक बड़ा सा लोहा का बना हुआ पिलर दिखाई दे रहा है।

एक बहोत ही बड़ा बिल्डिंग का दृश्य है बिल्डिंग की दीवार का कलर क्रीम और वाइट है बिल्डिंग में आगे रेलिंग लगी हुई है।

दुकान के अंदर बहुत सारे वस्तु भी रखे हुए हैं।

कुछ मछलियां छोटे और कुछ मछलियां बड़े हैं।

के आगे रेलिंग लगी हुई है।

पर एक ब्लैक रंग का ट्रे रखा हुआ है।

रोड बहुत सारे व्यक्ति भी है रोड के किनारे पल भी लगी हुई है।

चर्च के बिल्डिंग में बहुत सारे लाइट जल रहे हैं।

चर्च में सीढ़ियां बनी हुई है।

यह एक कपड़े दुकान का दृश्य है कपड़े दुकान के अलमीरा में बहुत सारे शर्ट के कपड़े सजा सजा कर रखे हुए हैं।

इसकी दीवार पर वॉलपेपर लगे हुए हैं और एक फैन भी है।

यह एक बिल्डिंग का दृश्य है बिल्डिंग व्हाइट कलर की है।

ट्रांसफार्मर भी बना हुआ है।

और नीचे में भी कुछ वस्तुएं स्टॉल लगा कर--

रोड पर बहुत सारे वाहन भी चल रहे हैं।

इस कमरे में एक काउंटर है काउंटर पर एक मॉनिटर है।

और एक अलमीरा बनी हुई है अलमीरा में भी बस--

दुकान के अंदर काउंटर है काउंटर पर बहुत सारी बोतल रखी हुई है।

ऊपर एक और अलमारी है अलमारी में शीशा लगा हुआ है।

बहोत सारे मुर्गी को रखा गया है।

यहां पे एक बड़ा सा ग्रीन कलर का कारपेट बिछा हुआ है।

अलमारी के नीचे भी एक पीले रंग का डिब्बी और एक ग्रीन रंग का डिब्बी रखा हुआ है।

इस कमरे में अलमीरा भी बनी हुई है।

और एक ड्रेसिंग और भी बहुत सारी वस्तुएं रखे गए हैं।

गद्दा प्लास्टिक में पैक है।

ग्राउंड में बाउंड्री भी किया हुआ है।

ग्राउंड में एक बड़ा सा हाथी का मूर्ति भी बना हुआ है।

रोड के आगे भी बहुत सारे फोर व्हीलर हैं।

इसकी दीवार पे बहुत सारे बैनर और स्टीकर चिपके हुए हैं।

यह एक बहुत ही बड़ा कमरा का दृश्य है कमरा व्हाइट कलर का है इस कमरे में खिड़की ही बने हुए हैं।

करकट में बीच बीच में लोहे का रॉड भी है।